क्रेन मशीन जो कि नीचे खड्डा कर रही है जमीन मे मिट्टी निकाल रही है।

डॉक्टर ने एक कुत्ते को आ टेबल पर लेटाया हुआ है और दोनों डॉक्टर्स मिलके इस कुत्ते का इलाज कर रहे हैं बाजू से सिरिंज वगैहरा भी रखी हुई हैं।

इमेज किसी शॉप का है जहाँ पर अ अ दीये रखे हुए हैं जलाने वाले ये डिज़ाइनर दीये है जिनपर कलाकृति बताई गयी है अपनी--

उसके आजू-बाजू में चारो साइड जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है बहुत बड़े-बड़े पेड़ है जो की इस जंगल में लगे हुए है और ऊपर साइड पत्थर की जमीन है।

और फिर मेहरून कलर की ये फोर व्हीलर है अ अ जिसको ठीक किया जा रहा है इसके चक्के वगेहरा निकाल कर साइड में रखे गए हैं।

रिसेप्सन है यहाँ पे चार से पांच कुर्सियां डली हुई दिखाई दे रही है रखी हुई दिखाई दे रही है।

और ग्राउंड के चारों साइड सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लोगों को बैठने के लिए।

पो-पार्ट बने हुऐ है पार्टीशन है जहां पे बहुत सारे सामान रखा हुआ है किराने का बेचने के लिए कुछ ऑरेंज सामान है कुछ येलो सामान है।